मुझे इस फोटो पर कुछ बुक्स नजर आ रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर पत्थर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर कुछ लोग भी दिख--

मुझे इस फोटो पर एक ग्रीन कलर --

छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

केला के पेड़ भी दिखाई दे र--

कुछ बोटल दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर निशा मेहंदी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर चूड़ी नजर--